यहां हमें कई सारी स्त्रियां नजर आ रही है।

यहां हमें दो दुकानें नजर आ रही है।

दुकानें दोनों खुली हुई नजर आ रही है बहुत सारी बाल्टियां रखी हुई नजर आ रही है।

उनके पीछे ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ है।

फैक्ट्री के बाहर फैक्ट्री का गेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

कोट के पीछे दो घर दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम मे हमे वाशिंग मशीन नज़र आ रही है।

यहां हमें एक मंदिर नजर आ रहा है मंदिर का गेट नजर आ रहा है।

यहां हमें बहोत सारे कार्टून नजर आ रहे हैं।

यहां हमे बहोत सारी टेबल दिखाई दे रही है खिड़की नजर आ रही है।

बहोत सारा पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है रोड पूरा पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ गुम्बद टाइप बने हुए लग नजर आ रहे हैं।

वहां लिखा हुआ है एस_के इंटरप्राइजेज ।

इंदौर रो और अहमदाबाद रोड भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बोर्ड पर श्री धर्म राज फास्ट फूड लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां हमें एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है स्विमिंग पूल में एक हाथी का फाउंटेन नजर आ रहा है।

एक बंदा उस पर बैठा हुआ नजर आ रहा हैं और झाड़ भीं नजर आ रहें हैं।

यहां हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है और सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है।

पति और झाड़ की घासे से नजर आ रही है बड़े-बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

यहां हमें वाइट कलर की दीवाल दिख रही है दीवाल पर एक टेबल रखी हुई है।

स्टेज पर छात्राएँ नाच रही हैं। ऊपर एक छत घड़ी भी दिख रही है।

हां हमें बहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग का कलर पीला नजर आ रहा है।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

क्लास के अंदर टेबल और बेंचेज नजर आ रहे है।

और सारे स्टूडेंट व्हाइट ड्रेस पेहन कर बैठे हुए दिख रहे हैं।

दुकान के ऊपर मिथिला बुक सेंटर लिखा हुआ दिख रहा है।